सी और C में पॉइंटर्स प्वॉइंटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्वॉइंटर्स प्वॉइंटर्स बनाना और प्वॉइंटर्स पर कार्य हम यह एक उदाहरण के माध्यम से करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 उबंटु पर जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ
प्वॉइंटर्स के परिचय के साथ शुरू करें
प्वॉइंटर्स मेमरी में स्थान इंगित करता है
प्वॉइंटर्स मेमरी को संचित करता है
यह उस एड्रेस में संचित वेल्यू भी देता है
अब प्वॉइंटर्स पर एक उदाहरण देखें
ध्यान दें हमारा फाइलनेम pointers democ है
अब हम कोड के माध्यम से चलते हैं
यह हमारी हेडर फाइल stdioह है
यह हमारा मेन फंक्शन है
यहाँ हमारे पास वेल्यू 10 के साथ लोंग इंटीजर नुम है
तो हम एक प्वॉइंटर पिट्र घोषित करते हैं
ऐस्ट्रिक चिन्ह का उपयोग प्वॉइंटर को घोषित करने के लिए किया जाता है
यह प्वॉइंटर लोंग इंट के प्रकार को इंगित कर सकता है
स्टेटमेंट में एम्प्रसेंड का उपयोग वेरिएबल के मेमरी एड्रेस को रिट्राइव करने के लिए किया जाता है
अतः एम्प्रसेंड नुम नुम का मेमरी एड्रेस देगा
यह स्टेटमेंट वेरिएबल नुम का एड्रेस प्रिंट करेगा
यहाँ पर पिट्र नुम के एड्रेस को संचित करता है
यह स्टेटमेंट पिट्र का एड्रेस प्रिंट करेगा
सिजियोफ फंक्शन पिट्र का आकार दर्शाएगा
यह इस पिट्र की वेल्यू देगा
यह नुम का मेमरी एड्रेस है
और यहाँ ऐस्ट्रिक पिट्र एड्रेस पर वेल्यू देगा
अतः ऐस्ट्रीक का उपयोग मेमरी एड्रेस नहीं देगा
इसके बजाय यह वेल्यू देगा
ld लोंग इंट के लिए फार्मेट स्पेसीफायर है
अब प्रोग्राम को निष्पादित करें
Ctrl Alt और ट कीज अपने कीबोर्ड पर एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
निष्पादित करने के लिए टाइप करेंgcc स्पेस पॉइंटर्स अंडरस्कोर डेमो डॉट सी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस पॉइंट एंटर दबाएँ
टाइप करें डॉट स्लैश पॉइंट एंटर दबाएँ
आउटपुट प्रदर्शित होता है
हम देखते हैं कि नुम ऐड्रेस और पिट्र वैल्यू समान है
जबकि नुम का मेमरी ऐड्रेस और पिट्र भिन्न है
पॉइंटर प्वाइंटर का आकार 8 बाइट्स है
और पिट्र द्वारा चिन्हित वैल्यू 10 है जो नुम को दी गई है
अब समान प्रोग्राम C में देखते हैं
ध्यान दें हमारा फाइलनेम पॉइंटर अंडरस्कोर demoसीपीप है
यहाँ हम कुछ परिवर्तन देखते हैं जैसे आईओस्ट्रीम के रूप में हेडर फाइल
तो हम एसटीडी नेमस्पेस का उपयोग कर रहे हैं
और हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन की जगह पर काउट फंक्शन है
बाकी सभी चीजें समान हैं
प्रोग्राम को निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर वापस जाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें g स्पेस pointers democpp स्पेस हाइफेन ओ स्पेस पॉइंट1 एंटर दबाएँ
टाइप करें डॉट स्लैश पॉइंट1 एंटर दबाएँ
हम देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे सी प्रोग्राम के समान है
अब इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
अपनी स्लाइड पर वापस आएँ
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पॉइंटर प्वॉइंटर के बारे में
पॉइंटर प्वॉइंटर बनाना
और पॉइंटर प्वॉइंटर पर कार्य
नियत कार्य के रूप में वेरिएबल और Pointerप्वॉइंटर को घोषित करने के लिए एक सी और C प्रोग्राम लिखें
वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंटर प्वॉइंटर में संचित करें
और पॉइंटर प्वॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
धन्यवाद